साथ ही इस चित्र में एक डेस्क भी रखी गई है।

चित्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्कूल में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हो रहा है।

इसमें नीला लाल तथा काले रंग की भेष भूषाएं पहनी है।

अति एक पंखा भी यहां पर दिखाई दे रहा है जो की चॉकलेटी रंग--

इस चित्र में बहुत सारे सूअर आराम करने के लिए सोए हैं।

सूर्य की रोशनी ज्यादा न गिरने के कारण पेड़ पौधों का रंग यहां पे काला दिखाई दे रहा है साथ ही एक पानी का तालाब जैसा कुछ बना हुआ है।